दो प्राचीन वाद्य अंत्र जिसमें कुछ लकड़ी के बने हुए हैं तो कुछ --

एक सफेद के टेबल में पड़ा हुआ है।

एक इसके किनारे पेड़ पौधे हैं सरोवर के किनारे कुछ --

एक सरोवर है जिसके बीच एक लकड़ी का खंबा लगा हुआ है सरोवर के किनारे कुछ पेड़ पौधे और कुछ मंदिर है स सरोवर में --

एक बड़ा हॉडिंग बोर्ड जिसमे एस.बी.आई. लिखा हुआ है बोर्ड का दरवाजा नीले एवं सफेद रंग का है।

एक बड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है जिसके चारों और घास के मैदान है।

शटर के बगल में एक बड़ी सी लोहे की खिड़की लगी हुई है शटर वाले कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ है।